यह एक क्लास रूम का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे बिंस लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक खिड़की दिखाई दे रही है।

यहां पर एक फैन लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारा लोहा का कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े टायर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक बड़ा सा पोस्ट जिसमें सीएट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।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

यहां पर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर एक दुकान दिखाई दे रहा है।

फर्श पर टाइल्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ पेड़ उगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही है।

यहां पर पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

बगल में कुछ बोडे रखे हुए दिखाई दे रहे है।

यहां पर दो खिड़कियां रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर दो रेफ्रिजरेटर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक सीढ़ी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर सिम का टावर दिखाई दे रहा है।

जमीन पर हरी हरी घास उगी हुई दिख रही है।

यहां पर बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ उगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ पिलर्स दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पर कुछ पौधे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।